ये जो इमेज हमारे सामने हैं इसमें एक सफ़ेद रंग की बस हमको दिखाई दे रही है और बस का जो नाम हैं उसका नाम हैं फ़ास्ट पांडव।

और इसपे इसका जो चर्च का ये मैंन गेट हैं ओपनिंग हैं एंटर होने का और वह पे ईंटा का दिवार हैं दोठो ऐसे बना हुआ पिलर टाइप क--

उसमे वो लगा हुवा है अल्वेस्टर सीट हैऔर इसमें बना हुवा है दीवाल जिस में क्रोस का निशा--

ये जो इमेज हमारे सामने हैं जो की बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये एस के एस.टी एक्स्पिरिंस साहेब गंज का कोई चर्च है।

ये जो हमारे सामने इमेज है ये इमेज जो किसी माल गोदाम कार्यालय का इमेज है जिस की छत पर एक टंकी भी रखी हुई है|